यहा रेलवे स्टेशन दिख रहा है इसमें रेल खड़ी हुई है इसकी वाहन व् रेलिंग बनी है जिसमे बहोत सारे पाइप लगे हुए है ये लाल निले--

बनी हुई है उपर तीनो का सेट बना है इसमें उपर लाइटिंग लगी हुई है और उपर बहोत सारे तार लगे हुए--

पहने हुए हैं और नीचे धरती पे जिनकी छांव दिखाई दे रही है और पीछे कुछ पेड़े दिख रहे हैं सामने साइकिल का पहिया दिख रहा--

सामने तिन मोटरसाइकल दिख रही है मोटरसाइकल के उपर बॉक्स रखा हुआ है जो लाल कलर का है और एक पीछे--

बस खड़ी हुई है जो उपर से भी निचे हरे कलर की है हरे कलर व् पिली पट्टी बनी हुई है और उपर का--

इनपर मुर्तिया बनी हुई है जो पीले कलर की है और निचे लाल कलर की मूर्ति बनी हुई है और दोनों साइड हरी हरी घास लगी हुई है और मन्दिर --

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो लही जिसमे सेंटिंग लगी हुई है लकड़ी की और एक साइड नेट बंधी हुई है जो हरे कलर की है और निचे हरी घास दिख रही है और एक साइड में--

सामने नदी है जिसका पानी कला सा दिख रहा है और बहोत सारे महिलाये खड़ी हुई है और पुरुष भी खडे हुए है जो हाथ जोड़े हुए है और हाथो में--

सामने एक आदमी के हाथों में अगरबत्ती लगी हुई हैं और पीछे बहुत सारी महिला बहोत--

लाल कलर पुता हुआ है और साइड में भी एक लाल कलर पुता हुआ है और निचे बहोत सारे घ्मले रखे हुए है जो हरे दिख रहे है।

सामने बड़ा उचा पहाड़ दिख रहा है झरना है जिसके उपर से सफ़ेद पानी गिर रहा है और निचे--

उचे पेड़ लगे हुए है सामने एक आदमी खड़ा है जो नीला बेग टाँगे हुए जिसके हाथ में घड़ी है उपर सफेद आसमान दिख रहा--

मालगाड़ी खड़ी हुई है जो लाल कलर की है और उपर बहोत सारे तार दिखाई दे रहे है खम्भे लगे हुए होरांग है।

नीले कलर की है और सफेद दिखाई दे रही है और इस साइड कुछ आदमी दिख रहे है और बहोत सारे दोनों साइड पेडे दिख रहे है और उपर नीला आसमान--

तीनों लाल कलर के हैं बीच वाले काले कपड़े और दोनों साइड लाल कपड़े पहने हुए हैं और पीछे मोर के पंख--

सामने एक दुकान की बहोत सारी रेके दिखाई दे रही है सामने की रेको पर--

चपल रखी हुई है निचे भी कुछ डब्बे रखे हुए है उपर भी डिब्बे रखे हुए है और एक पोस्टर लगा--

नीले कलर से स्व स्वर अस्पताल गोपाल गंज--

तुलसी बेकरी लिखा हुआ है और निचे एक काच के गेट लगे हुए है जिसमे दोनों साइड सफेद पट्टी लगी हुई है और एक बडा--

पोस्टर लगा हुआ है और बाहर एक स्कूटी खड़ी हुई है।

एक हॉल है इसमें बेंच लगी हुई है जिसमे एक नील पिंक और सफेद गुब्बारे लगे हुए है जो--

पिली लाइटिंग लगी हुई है और खम्भे पर रे और गुब्बारे लगे लगे हुए है।

सामने एक चबूतरा बना हुआ है जिसके उपर दप मूर्ति बनी हुई है जो रंगीन है और इनकी--

उपर बड़े बड़े फूलो की मालाये छड़ी हुई है निचे दो मटकी रखी हुई है एक पीतल की एक स्टील की--

लग रही है और चबूतरा पूरा सफेद कलर का है और साइड की दीवार पीले--

यहा खड़ी हुई है जो नील पीले कलर की है और खली है और इसके पीछे दो नाव है इसपर आदमी--

सफेद लगे हुए है और दोनों साइड दो कारो और दिख रही है एक साइड काली और एक साइड आधी सफेद और पीछे--

ये हरे हरे पोधो की बनी हुई है और पीछे कुछ मोटर साइकल दिखाई दे रही है और बहोत से पेड़ दिखाई दे रही है।

सामने एक झोपड़ी दिख रही है जो चारे की बनी हुई है इसके चारों ओर भी लकड़ी और चारे लगा हुआ है और इसके सामने एक बड़ी सी--

दिख रहे है और साइड में निचे हरी घास लगी हुई है और एक बड़ा सा नीला बोर्ड हुआ है जिसमे--

सफ़ेद कलर से कसता वाटर फल लिखा हुआ है और पीछे पहाड़ दिख रहे है --

लाइट ब्लू कथाई और साइड में बहोत सारे कपड़े छोटे बच्चो के बड़े बच्चो के टंगे हुयी है और दूत--

सामने एक बड़ा गेट दिख रहा है जो ओ रंगीन कलर का पोता हुआ है जिसमे नीला पीला--

लगी हुई है और सारे पेड़े दिखाई दे रहे है ऊपर नीला आसमान दिख रा--

बाहर बहोत सारे आदमी है जो रेत पर है और दूर बहोत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है। सफेद है नीली है।

एक आदमी बैठा हुआ है वो ओ पीले ए कलर की जैकेट पहना हुए सफ़ेद शर्ट पहने--

हुई है अंदर कुछ काला काला दिख रहा है और नीचे सफ़ेद चादर लगी हुई है और इस की पीले--

सामने एक टेबल फैली हुई है जो नीचे पीले कलर की ऊपर काले कलर की है और जिसमे लैपटॉप रखा हुआ है और सामने --

बहत सारी हरी पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर नीला पर्पल और सफ़ेद ब्लैकेन वाइट आसमान दिखाई दे रहा --

और बहत से आदमी दिखाई दे रही है नीचे हरी हरी घास दिख रही है और पानी दिख रहा--

सामने एक बड़ा सा गेट दिख रहा है जो लोहे का सफ़ेद कलर का है जिसके दोनों साइड खम्बे बने जो लाल कलर के पोते हुए है जिनमे सफ़ेद कलर से डिज़ाइन बनी हुई है और ईसके अंदर--

बड़ा काला गेट बना हुआ है जिसमे कुछ लिखा सफ़ेद अक्षर से कुछ लिखा हुआ है ।

उन पथरो पर हरी हरी चोई लगी हुई है और सामने रेलिंग बनी हुई है जोई--

और सामने एक बड़ी टेबल बनी हुई है जिसके उपर एक टेडी रखा हुआ है जो पर्पल कलर का है जिसकी साइड --

काच की अलमारी गेट वाली अलमारी बनी हुई है जिनमे अंदर बहोत सारी तस्वीरे रखी हुई है और उपर--

और पेपर का गुलदस्ते बना रहे है और एक एक लड़का सामने बेठा हुआ है जो पूरी सफेद ड्रेस पहने हुए हैं इनके पीछे--

दोई लगी हुई है जो काले कलर की है और उपर दीवार पीले कलर की और निचे लाल कलर की है और निचे ब्लू पट्टी बनी हुई है।

हेकवेंद टंगे हुए है और साइड में उपर एक पंखा लगा हुआ है इसके निचे दो बोर्ड बने हुए है और निचे एक--

कलर का है जिसकी साइड में पर्दा लगा हुआ है जो कथाई कलर का है जिसमे--

सामने एक दुकान दिख रही है जिसमे उपर एक नीला और हरा पोस्टर लगा हुआ है जिसमे सफेद कलर से उपर--

सामने एक नदी दिखाई दे रही है जिसका पानी ब्लैक एंड वाइट और सफेद दिखाई दे रहा है जिसमे लहर लहर--

दिख रहे है और पानी में पेड़ो की परछाई और घरो की परछाई दिखाई दे रही है।

एव पानी के किनारे पर वदि हुई है जो सफेद दिख रही है और बहोत से पोस्टर लगे हुए है और--

बहोत सारे घर दिखाई दे रहे है बहोत सारे पेडे दिख रहे है ऊपर सफेद नीला--

ये रैके रखी हुई है जिनके उपर बहोत सारे सामान रखा हुआ है साइड की दीवार सफेद कलर की है और सामने वाले--

और इग्लिश में भुग्नेशावर रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है उपर वेलकम लिखा हुआ है और दोनों साइड दीवार बनी हुई है जिसपे रंगीन चित्र बने हुए है।

और दोनों साइड बहोत सारे पेडे दिखाई दे रहे है सामने बिल्डिंग दिख रही है।

सामने एक कुल्हाड़ी दिख रही है जो खड़ी रखी हुई है और निचे राख डली हुई है और--

और दो पेडे दिख रहे है उपर नीला आसमान दिख रहा --

जिसके आगे नीले कलर से हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है और जिसके आउट साइड में--

सफेद कलर से शिशु पाल्गड़ शाखा लिखा हुआ है और उपर विवो से पोस्टर लगे हुए है ओए निचे बहोत सारी मोटरसाइकल खड़ी हुई है और--

पीले कलर के पर्दे लगे हुए है और सीडिया बनी हुई है जो सफेद दिख रही है और सामने--

सामने एक दुकान दिख रही है जिसमे रेक बना हुआ है जिसमे बहोत से प्रकार के मोबाइल रखे हुए है उपर हरी पटी पुती हुई है जी--

ब्लैक कलर से सेल्फी एक्सपर्ट टिउल सेल्फी कैमरा लिखा हुआ है और निचे काच के रेक बने है जिसके अंदर मोबाइल --

दोनों साइड पोस्टर लगे हुए है एक नीले कलर का है एक उपर पीला निचे--

नील कलर का है और निचे बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे है और बहोत सी जलीया लगी हुई है।

इनमें गेंदें कि फूल की झालर लगी हुई है और चारों ओर कुछ पेड़े दिखाई दे रहे हैं नीचे हरी घास है ऊपर नीला --

जो सफेद कलर की है उपर छत भी सफेद कलर की है जिसमे बहोत सारे पंखे लगे हुए है बहोत सारी लाइट लगी हुई है।

और कुड्सी यहा पीले कलर की दिख रही है और साइड में दो कांच की खिड़की बनी हुई है और सामने दो पोस्टर लगे हुए है और निचे--